और एक स्टेज पर बैठे हुए है सब एक साथ और सबने टुयुनिग की हुई है और ब्लैक कलर का---- ।

और यहाँ पर सीलिंग ब्लू कलर की है और पूरा वाइट कलर का सैलून है और बहुत सारे लोग बेठे --

ये एक शॉप है और एक लड़का है जो की कॉफी भर रहा है।

ये परफॉरमेंस हो रही है छोटे बच्चे नहीं हैं इसमें बड़े-बड़े लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं एक दो छोटे बच्चे हैं।